पेंटिंग मे भी देखे जा सकते है जब हम इसे गौर से देखते है तो हमे दूर दूर तक सिर्फ पानी ही दिखाई देता है।

इमारत होगी जहा पर इन सब नामों से संबंदीत कोई ऑफिस या दुकान होगी। जो ये नामों के हिसाब से काम करती--

ये जगह बहुत बड़ी है। और यहा पर एक और दो विमान एक साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे है। इन विमानों के आस पास कोई नहीं दिख रा--

हमारे सामने एक रोशनी से नहाया हुआ मंच दिखाई दे रहा है। लाइट की रोशनी मे यह मंच बहुत ज्यादा प्रकाशित है।

जगह देखने मे बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। बीच मे रास्ता बना हुआ है। जिसके एक तरफ पानी भरा हुआ है। ये किसी नदी का किनारा है। दूसरी तरफ बहुत हरियाली है।

यहा पर एक बोर्ड रखा हुआ है जिसमे लिखा है हुरडा महोत्सव ये महोत्सव मनाने के लिए अंदर लोग गए होंगे।

इस बड़े से कमरे मे हमे भोजन की व्यवस्था दिखाई दे रही है।

यहाँ पर हमे एक दीवार नज़र आ रही है जिसमे कई सारी पेंटिंन्ग्स लगी हुई है ये सभी पेंटिंग्स अलग अलग है और इनमे अलग अलग चित्र बने हुए है ये पेंटिंग बनाने वाले की --

यह एक बांध का चित्र है जिस मे से नदी का पानी दूसरे दिशा मे जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

जिस पे पूरी तरह से हर हरा-हरा सा पेड़ पौधे लगे है यह पेड़ पौधों ने चट्टानों को पूरी तरह ढाँक लिया है कही-कही से बीच मे पहाड़ पत्थर भी झांकते हुए दिखाई दे रहे है।

खराबी या कोई समस्या तो नहीं है आसपास जो गाड़िया दिख रही है वो इन्ही कामों के लिए होती है वो इनकी देखरेख करती--

यह कोई शादी समारोह भी हो सकता है जहा की ये बैठक व्यवस्था है।